टेबल कुर्सियां दिख रही हैं साइड में रफीक वारसी नाश्ता कॉर्नर --

इस चित्र में हमें एक दुकान दिख रही है।

बहुत ही बड़ा ग्राउंड भी दिख रहा है।

ये दो घर पतरे के नजर आ रहे हैं।

और कुछ हरे भरे पेड़ भीं दिख रहें हैं।

एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ काम करता दिख रहा है।

देख रहा है और कुछ लोग चलते हुए--

पाइप भी दिख रहे हैं और सूखे पेड़ भी दिख रहे हैं।

लिखा हुआ भी दिख रहा है एक्स रे हाउस ।

ये बीस पर्सेंट ऑफ का बोर्ड भी दिख रहा है।

चीजें बॉक्स के अंदर रखी हुई है।